औ वो इस मैदान में इवे बच्चे खेल रहे हैं। साथी ही में मैं एक मोटरसाइकिल बी रखी हुई देख --